यह एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारी चेयर्स लगी हैं वाइट कलर की चेयर में खोल ऊपर से कवर भी लगा हुआ है।

और सामने एक लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही है कुछ पेड़ सूखे है तो कुछ पेड़ बहोत हरे-भरे दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पे फोर व्हीलर भी खड़ी हुई है और रोड के आस-पास में साइड में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत सूंदर लग रहे हैं।

ठंड मे उसने गरम स्वेटर पहन रखी है।

यह एक डेयरी नीडस की दुकान दिखाई दे रही है।

यह एक ए.टि.एम. मशीन है।

यहाँ पर धूप से बचने के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर का ऊपर से एक कपड़ा भी लगाया गया है ।

कुछ लोगो की नजर गाड़ी के डिक्की के ऊपर है।